दरदर मरीज को सुई दे रहे हैं।

आदमी है इसके बाहर एक आदमी है एक मोटरसाइकल पर हेमलेट है।

यह एक कंप्यूटर का दुकान है इसके बाहर एक टेबल --